पिक्चर में फ्रेम दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर मे सीट दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा हैं।

मुझे इस पिक्चर में आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस पिक्चर में रोड दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में वीना दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में बोट दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारी--

मुझे इस पिक्चर में फैक्ट्री दिखाई दे रही है।

मुझे इस पिक्चर में पर्स दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहोत सारे गमले दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।